दो लाल रंग के खम्बे खड़े हैं और मेज भी हैं।

एक वोटर पार्क दिखाई दे रहा है। वोटर पार्क में एक ऊंची सी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।